उसमें ही बहुत सारे पेड़ खड़े हुए हैं।

यह एक शादी का मंडप है जिसमें बहुत सारी लाइट --

कलर की उम्म झालर लगी हुई हैं।

पास में यही पेड़ भी खड़े हैं और नीचे --

उसके रैक में नीचे बहोत सारे हेलमेट रखे हुए है।

और सारे कलर में व्हाइट कलर हो रहा है।

इसपे बोर्ड लगा हुआ है।

और बच्चे भी खड़े हुए हैं पीछे एक तालाब भी दिखाई दे रहा है।

रैक में रखे हुए हैं रैक का कलर काला है।

यहां एक बैडमिंटन फुटबॉल वॉलीबॉल और बैट्स भी रखे हुए हैं।

पास मे ही बहोत सारी बाल्टिया टंगी हुई हैं।

दो बैनर भी लगे हुए--

साइड में बहुत सारी व्हाइट कलर की पेटियां भी रखी हुई हैं।

जो कि मालाओं से सजा हुआ है।

यह एक बुक स्टोर है जहां बहुत सारी बुक रखी हुई हैं।

एक मंदिर दिखाई दे रहा है।

यहाँ बहुत सारे गुब गुब्बारे भी लगे हुए हैं।

और दो आदमी भी खड़े हैं।

पीछे घर भी दिखाई दे रहा है।

एक छोटा तकिया भी रखा हुआ है।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

सामने ही बहोत सारी कुर्सियां भी पड़ी हुई है।

यह एक शादी का मंडप दिखाई दे रहा है।

एक सेवलॉन की शीशी भी दिखाई दे रही है।

जो की एक आदमी उनको कुछ समझ रहा है।

एक सिंक भी दिखाई दे रही है।

उसी में एक जाल भी दिखाई दे रहा है।

जिसमें बहुत सारी एंगलें लगी हुई हैं।

और पास में ही पांच सौ से सात सौ रुपए लिखा हुआ है।

यह ऑफि ऑफिस दिखाई दे रहा है।

यहां कुछ बच्चे रंगोली बना रहे हैं।

ब्लू कलर के टी शर्ट पहन रखी है।

उसकी जो पीछे एक गमला भी रखा हुआ है।

यह एक क्लासरूम दिखाई दे रहा--

उसके साइड में तीन गाड़ियां भी खड़ी हुई है और उसपे बाह्य रोगी वि विभाग लिखा हुआ है।

नीचे रेड कलर की ईंटे बिछी हुई हैं सामने बीकानेरवाला भी लिखा हुआ है।